दुकान के ऊपर दो साइन बोर्ड टंगे हुए हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ है।

एक आदमी का पैर दिखाया गया है।

एक खिड़की है जहां पर्दे है दीवार है जिसका रंग पीला है।

नीचे स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पे एक बहोत बड़ा नदी नजर आ रहा है।

कुछ लोग ने हाथ में जल ले के खड़े हैं।

इस तस्वीर पर एक बहुत बड़ा बिल्डिंग नज़र आ रहा है।

इस तस्वीर पे एक दुकान दिखाया गया है।

इस तस्वीर पर महात्मा गांधी जी का मूर्ति नजर आ रहा है और तीन मूर्तियां भी नजर आ रहा है।

महात्मा गांधी जी ने एक लड़के को एक लाठी से मारते हुए नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर एक कपड़े का दुकान दिखाया गया है।

कई लाइटें जलाए हुए हैं।

एक आदमी बैठकर किताब खोज रहा है।

इस तस्वीर पर आधा बांस नजर आ रहा है।

रास्ते के उस पर कुछ रूका हुआ है ।

इस तस्वीर पर एक बहोत सुंदर नदी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर पर कई घर दिखाई दे रहे हैं।

एक घर के ऊपर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है।

एक घर के बाहर एक साइन बोर्ड टंगा हुआ है।

इस तस्वीर पे एक सुंदर सा पार्क नजर आ रहा है।

एक बंद हुआ नज दुकान भी नजर आ रहा है।

कई आदमियाँ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर पर एक घर दिखाया गया है।

कहीं जार में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

एक बड़ा फील्ड नज़र भी आ रहा है।

फील्ड के उसे पार एक बड़ा बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

पेन और लाइट भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर पे एक कारपेट बिछाया गया है जमीन पर।

इस तस्वीर पर बहोत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिल्डिंग पर कई सारे बालकनी भी है।

रूम के अंदर दो खिड़कियां भी है।

नीले रंग के पर्दे से पर खिड़कियों को ढका गया है।